ये चित्र मा हमते दुइ-तीन नौनियाल छन दिखेण लाग्यां जो एक लुआ के रेलिंगम ब्रैंड च लिया अगाडी हमते एक छोटू मैदान दिखेण लग्युं जमणे हमते बहौत सारी बाइकें दिखेण लगीं जु खड़ी छन हुईं पार फण हमते एक बडु ईमारत च दिखेण लग्युं।

योणा हमते बहौत सारा लोग छी दिख्याण लाग्यां और ऐंच पण हमते कुछ कपड़ान दिख्येण लाग्यां।

ये चित्र मा हमथै एक नुन्याल च दिखेण लग्युं जु एक कुर्सी म च बैठ्यु अर वेका मुख पर कुछ सफ़ेद क्रीम का च लगयीं वैका पैथर एक नुनियाल च जैका हाथम एक बोर्ड टैप कर च पकडियू अर वेकी पोट्टू च खिचणु।

दिखेण सी यू जगा एक होटल च लगणी जमणा हमथे एक पाणी की बोतल भी च दिखेणी साइड दिवाली पर हमथे चित्र भी दिखेण छि लग्यां।